और जो महल है वो काफी सुन्दर बना हैं संगमरमर का बना हुआ हैं फर्स भी पत्थर के बने हुए हैं और इसमे बहुत बारीक कारिगीरी की गई हैं |

और गौतम बुद्ध की बोहोत सारी मूर्तियां पड़ी हुई है यहां पे लगी हैं सामने।

और सामने बड़े-बड़े पेड़ भी है। दीवाल लगी हुयी है ईटों की।

यह जैन धर्म का मंदिर है जिसमे बुध भगवान की प्रतिमाये लगी हुई है मूर्तियां लगी हुई है।

इस इमारत मैं काफी बारीक काम किया गया है और डेकोरेशन इतना सुंदर है कलर भी बहुत सुंदर किया गया है।

यह एक बिल्डिंग हैं। जो काफी सुंदर है। बिल्डिंग के बाहर कुछ बाइक खड़ी हैं बाइक रेड कलर की हैं |

वाव बहुत सुंदर बिल्डिंग हैं यानि की जो बिल्डिंग हैं ये फ्लैट हैंफ्लैट इतने सुन्दर हैं की देखने मे बहुत सुन्दर लग रहे हैं ब्यूटीफुल लग रहे हैं |

अति सुंदर यह एक सरकारी ऑफिस है। जो काफी सुंदर है।

यह चित्र एक एक्सहिबिशन का है। एक्सहिबिशन काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है।

आपके सामने कुछ सुंदर-सुंदर आक्रतिया दिखाई दे रही हैं। यह आक्रतिया काफी आकर्षित हैं कर रही हैं |

और बहुत सारे लोग भी है आते-जाते दिखाई दे रहे हैं। काफी दुकानें है लाइन से जो काफी सुंदर दिखाई दे रही है।